हई एगो स्पोर्ट के पूरा गार्डन प्रैक्टिस बाटे उ जो खूब ढेर सारा लोग बानलो रात्रि के समय बा दुगो लाइट जलता उ जो बैठे खातिर स्टैंड बनल बा उमे खूब ढेर सारा लोग खेलता ना लोग --

पर्दा लागल बा हरियल कलर के एक साइड व्हाइट कलर के पर्दा लागल बा। निचे छोटा सा कचरे का डब्बा बाटे। ओईजु एक दरवाजा बा। दुगो बइठे वाले --